यह एक रोड दिख रही है रोड पे एक रिक्सा जा रहा है और बाउंड्री वाल किया हुआ है पीछे ब्लू शेड दिख रहा है।

इधर एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग गोल है उसमे एक कांच दिख रहा है खिडकी--

यह एक रास्ता दिख रहा है रास्ता के सामने एक बड़ा गेट दिख रहा है उसके ऊपर शेड लगा हुआ है और ब्लू कलर का बड़ा बोर्ड लगा है।

और इधर एक मकान दिख रहा है मकान के ऊपर गोल अम- गुंबज बना हुआ है जो रेड और व्हाइट दिख रहा है।